और एक सड़क दिखाई दे रही है। कुछ व्यक्ति खड़े है और कुछ बैठे है। साइ एक एक व्यक्ति साइकिल पर सवार --

हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं की यहाँ पर हमे एक दुकान दिखाई दे रही है। दुकान के ऊपर सो ब्यूटी --

और कुर्सीयो का कलर काला है। चारों तरफ कुछ खिड़कियां लगी हैं और नीचे फर्श है।

हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में हम देख सकते है यहा एक किसी पार्क की तस्वीर है। यहां में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि --

घास ही घास है और कहीं समतल जमीन है।

बंजर जमीन दिखाई दे रही है। एक ऑटो रिकिक्शा खड़ा हुआ है जोकि टूटा हुआ है।

कुछ सीढ़िया बनी है और सामने हमें खेल का मैदान दिखाई दे रहा है। जिसमें चारों तरफ अ पेड़ पौधे --

हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा आ कांच से बना हुआ बैनर लगा है जिस पर श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह पटेल लिखा है।

सफेद कलर का टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है और सामने एक स्टेज बना है। अम्म अ स्टेज के सामने बहोत सारी कुर्सियाँ लगी हैं। ये कुर्सियाँ लाल कलर की हैं।

कहीं घास और कहीं अ मिट्टी और कई बड़े-बड़े पेड़ उग रहे हैं। स नीचे बड़ा --

हमारे सामने तस्वीर दिखाई दे रही इस तस्वीर मे हम देख पा रहे यहां पर अ बोहोत सारे अलाव जल रहे हैं। एक दीवार बनी हुई है जिसके ऊपर --

जो कि एक दरवाजा दरवाजा है। दरवाजे के सामने बहोत --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

चारों तरफ दूर-दूर तक मैदान ही मैदान है। ऊबड़-खाबड़ पहाड़ और जमीन ही है। जिस पर हरी भरी घास --

सामने कुछ चप्पलें उतरी हैं और ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है। सामने हमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में झाड़ू है जो कि --

जो कि लाइटों से की गई है। सामने हमें एक मसाल दिखाई दे रही है जिसमें आग जल रही है और सभी व्यक्ति अपने सर पे गमछा किस किसी ने अपने कमर पर गमछा बांधे हुए --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

आ बस और बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ दुकाने लगी हुई हैं। एक दुकान सामने लगी है जिसमें गैस सिलेंडर रखा है।

अ कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं। सामने से एक व्यक्ति जा रहा है जिससे सफेद कलर के शर्ट पहनी हुई है।

पूरा स्टंप बनाया गया है और नीचे जमीन है और सामने भी स्टंप दिखाई दे रहे हैं।

एह कुछ चटनी रखी हुई है।